एक बड़ा-सा पत्थर नज़र आ रहा हैं जिसमे बहोत सारी सीढ़िया लगी हुई हैं उसके नीचे एक बड़ा-सा पत्थर भी रखा हुआ हैं और कुछ बगल में--

इस इमेज में मुझे एक नृत्य करती हुई लड़की दिखाई दे रही है ।

इस इमेज में कुछ गाड़िया नज़र आ रही है जो कि रिपेयरिंग हो रही है एक गारी मशीन के ऊपर तंगी हुई है कुछ आदमी उसे सुधार रहे है।